कुछ पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं।

बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई दे रही है।

कुछ बिल्डिंग्स और घर दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं।